एक पर्दो लगाएड़ो है टेबल है बीके कने तीन चार कुर्सियां पड़ी है एक आदमी खड़यो है एक पोस्ट एक पोस्टर लगायोडो है।

और एक लुगाई खड़ी है दो तीन छोरा खड़िया है और बीके आगे एक छोटी सी गाड़ी खड़ी है और दो तीन जना बीके मायन चढ़ रिया है।